आसमान पूरा काला हैं महजिद में तीन गो गुम्बज हैं बड़ा-बड़ा छोटा-छोटा तीन गो गुम्बज हैं महबीज-महजिद के एक साइड नीम के पेड़ दिखल करे हैं। महजिद के आगे दुगो चप्पल छूटल है केकोरो--

मोर के बहोत सारा पंख है। मोर के ऊपर से बेंच सी बेंच सितारा बजबे वाला है रखल ओकरा मे कमरा में मोर खड़ा है। कमरा में लाइट जलल करा है। कमरा साफ़ सुथरा है।

अर्चना मेडिको केमिस्ट एंड डिस्ट्रिक श्रीचंद नवादा एक एक दुकान है। दुकान दो तल्ला है। ओकरा आगे बोर्ड लगल है अर्चना मेडिको कमेस्ट्री एंड डिस्ट्रिक श्रीचंद नवादा जमुई।

एक कमरा है कमरा मे लाइट जलब करे है ओकरा मे बहुत सारा तलवार --

एक मैरिज हॉल है जहाँ वर्णमाला का कुर्सी लगल है वर्णमाला के कुर्सी और वर्णमाला के पूरा स्टेज लगल है बहुत सारा फूल बहुत सारे लाइट लगल है।

बहुत सारा गुब्बारा भी लगल है बैलून भी लगल है पूरा कुर्सी व्हाइट व्हाइट कलर से पूरा कवर्ड डखल है उसके ऊपर लाइट भी पूरा लगल है झूमर भी लगल है वर्णमाला के कुर्सी भी रेडी है।

फोटो जे बनाएल गयल है ओकरा में कुछ नीचे में कुछ गाड़ी दिखा पूरा धुंधला-धुंधला है ओकर पीछे एक पुलिस चौकसी लगा हाय दुगो टावर खड़ा है।

एक पार्क है पार्क मे हरा-हरा ऊंचा-ऊंचा घास है।

ऊंचा काला फिर बादल है बादल से आगे और बहुत सारे पेड़-पोधे और--

पेड़-पौधा बहुत हरा-हरा पूरा साइड में एक साइड दूर-दूर तक पहाड़ दिखा --

घास और कमर तक पूरा चमक रहा है ऊंचा ऊंचा घास है हरा-हरा घास पूरा भरा हुआ है।

परती खेत में कुछ भी नई लगल है पकडंडी है पकडंडी पर खाली है ओकर चारों साइड कुछ गाछ पेड़ पौधा है।